इस दृश्य में हमें एक गेराज दिख नो का मिल रहा है यह गरज तिने से बनाई गई है साथी से हाथ यहाँ पर आस पास कई बड़े बड़े घर देखने को मिल रहा है।

साथी साथ यहा पर हमें बोहोत सारी कुरसिया लगी है और उन कुर्सियों मै बहोत सारे आदमी और औरत बैठे हुआ नजर आ रहे है यहा पर लाइटिंग की व्यवस्था बोहोत अच्छे से की गई है।